और ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं और साइड में एक दुकान है। जहाँ पे कुछ स्नैक भी मिल --